यह एक लाल रंग कि बिल्डिंग दिखाई दे रही है जोकि थोड़ी छोटी ही है ।

आगे कि और गोला घेरा बना हुआ है जिसके अंदर ऊचे - ऊचे से पेड़ लगे दिखाई दे रहे हैं।

यहाँ पर बहुत ही हरे भरे पेड़ दिखाई दे रहे हैं दूर कि और कुछ पहाड़ जैसा भी दिख रहा है यह रस्ता --

जहाँ पर बहुत ही सुंदर लाइटिंग हुई है और बहुत सारे व्यक्ती बैठे हुए दिखाई--